सामने एक आईना दिखाई दे रहा है और आईने के आसपास जो दराज है उनमें काफी--

और ये फूलों की माला गिनी हुई हैं और उस उस फूलों के आगे--

एक बहुत बड़ी ग्राउंड दिखाई दे रही है।

भी दिखाई दे रहे हैं और बिल्डिंगा भी दिखाई दे रहे हैं।

सामने एक टेबल लगा हुआ है और--

फूलों की जो खेल है वो भी दिखाई दे रही है।

और सामने दो आदमी चेयर पर बैठे हुए हैं।

ये बहोत ही सुंदर दृश्य है और किश्तियां भी दिखाई दे रही है।

और कुछ बिल्डिंग भी दिखाई--

और एक रेड कलर की एक्टिवा भी दिखाई दे रही है।

और एक बाइक भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

और एक सिलेंडर भी दिखाई दे रहा है।

रेड और ब्लैक कलर की मैट बिछा हुआ है और ये--

जे एक रात की तस्वीर है।

दे रही है और दुकान के अंदर--

एक मजदूर भी दिखाई दे रहा है जिसने रेड कलर की--

जहां पर एक चादर बिछाई--

और ब्ल्यू कलर भी इसमें दिखाई दे रहा है।

जे किसी मैरिज का दृश्य है। जहां पर काफी सारे लोग दिखाई--

ये गोल्फ खेलते हुए नजर आ रहे हैं।

रहा है और ये काफी सुंदर शॉप है और यहां पर एक--

और आसपास में काफी सारे द्रख्त भी दिखाई दे रहे हैं।